पेड़ पोधे हैं। बिजली की तार हैं। मेरे पास ट्रेक्टर खड़े हैं। कुछ लोग भी हैं। ट्रक जा रही है। बहोत लोग आ जा रहे हैं।

यहाँ पर एक खम्भा भी है और बहोत लोग इकट्ठे हुए है और पेड़ पोधे हैं और बहोत ज्यादा बाइक भी है और बो- बोलेरो भी है।